ट्रेन के उस पार पहाड़ जैसा इलाका नजर आ रहा है जहां पर कुछ--

इस पर दो औरतें सर पर टोकरी लेकर--

सामने भी एक स्टेज जैसा बना हुआ है।